पीछे कुछ पेड़-पौधे है उसमे एक औरत जा रही है उसके हाथ मे कुछ समान है एक पिलर खड़ा हुआ है साड़ी पहने हुए औरत है और कुछ गंदा सा पानी हैं। जिसम कुछ पैरो पैरो --

पानी से भरा हुआ बड़ा सा खेत है जिसमे चारो तरफ से घास की मेटल हो रखी है और बगल से कुछ पेड़ लगे है पेड़ बहुत सारे पेड़ है।